एक चरखे टाइप की इस इमेज में दिखाई दे रही है और दिवारो के ऊपर पंखा लगा हुआ है तथा दीवार का कलर वाइट कलर से पोता हुआ है एवम विभ्भिन प्रकार की लाइटे लगी हुई है तथा पहिये भी रखे हुवे है।

सामने हमे एक गुफा परकी झरना दिखाई दे रहा हे इस झरने में पानी ऊपर से निचे की ओर गिर रहा है तथा जहर-गुफा के किनारे-किनारे टेबल भी रखे हुए है।

हमे यहाँ एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जोकि अत्यंत सुन्दर है स्विमिंग पूल में स्विमिंग पूल के बीचमे कई सारे --

बंदूक का कलर ब्राउन है ता चरखे का कलर भी ब्राउन है वह दीवाल पर टिका हुआ है दीवाल का कलर --

वहां स्विमिंग पूल के आस पास बहुत सारे नारियल के पेड़ भी लगे हुए है नारियल के पेड़ के नीचे बैठने की व्यवस्था भी है।

तथा एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है इस गेट का कलर व्हाइट है और इस गेट के आसपास कई सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है जोकि काफी हरेभरे दिखाई दे रहे है।